ये एक किताब दान है जिसमें चार किताब दाने है।

आमने छोटा सा टेबल है।

पीकर का रंग काला है।

स्विमिंग पूल का पानी साफ है।

इस स्विमिंग फूल चार कौन है।